हम ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक्क्क जैसे की यहाँ पर एक कंपनी है और ये कम्पनी मेन कम्पनी है।

ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक्क जैसे की एक घर है और एक घर के बराबर में एक है।

और जो देख रहे हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर उस कॉलेज की है जहाँ पर की ये जो कॉलेज --

ये काफी बड़ा कॉलेज है। जैसा की हम यहाँ पर देख रहे हैं पांच फुट की दिवार है पहाड़ है।

और हम देख रहे हैं इसकी जो बाहर की दीवार है।

और उसके पीछे भी बाइक है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पत्थर जो --

और इस पूल पर कुछ लोग आ जा रहे हैं और जैसे की महल जो है उसपे जो साइड पेड़ है काफी खूबसूरत है। यहाँ पर पेड़ वगेरा --

जैसे की काफी बड़े पेड़ हैं और जैसे की हम ये देख सकते हैं की जो जो ये जगह है ये बड़ी है। काफी अच्छे से होती है।

एक्क कार है जैसे की हम देख रहे हैं --

ये जो तस्वीर है --

ये जो तस्वीर ये तस्वीर एक जैसे गंगा की तस्वीर है ये गंगा नहाने के लिए आए हैं उने --